परदे भी लगा हुआ है सांड भी रखे हुआ है देखने मे मुझे लाल -पीला- गुलाबी सही -सही अच्छा भी लग रहा है ।